सामने एक अ बड़ा सारा महल दिख रहा है।

आस पास काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं और कुछ तालाब में पानी दि भरा हुआ दिख रहा है ऊपर आसमान है।

ये बड़ा सारा पहाड़ है पहाड़ मे कुछ नदिया है नदियों के सामने कुछ जानवर खड़े हुए दिख रहे है।

गोडाउन है कारखाना है यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो सफेद कलर की शर्ट में है काली पेन्ट में है नीचे काले कलर की चप्पल पेहना है।

बड़ा सारा हॉल है यहाँ पे काफी सारी लड़कियाँ खड़ी हुई है कुछ रानी कलर की टी-शर्ट पेहनी है और एक लड़की है जोकि नीले कलर की पैंट पेहनी है और सफेद कलर का टॉप पेहनी--